ताकि आप देख सकते हो यहां पर रेलवे स्टेशन है यहां पर बहुत बड़े-बड़े बैनर लगे हुए हैं और सेन बैनर के सामने बहुत ज्यादा आदमी इकट्ठा होकर खड़े हुए हैं।

जैसा की आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत से लड़के और लड़किया डांस की प्रक्टिस कर रहे है।